बस है और बस में बस के नीचे तीन आदमी है एक मोटर साइकिल पे है और उधर आस-पास में दुकान है। पीला कलर का बैंगनी कलर का है और --

पराका छोरा जा रहा है फुलझड़ी और लाइट बड़ रहा है जैसा दिख रहा है एक लड़का है जो गेट की इस तरफ --

पारले जी है। गुड डे है। डिब्बा में भी बहुत सारे पानी का बोतल है। फ्रिज है।